पंचिंग बैग भी दिखाई दे रहे हैं यहां पर मुझे बहुत सारी लाइट जली हुई नज़र आ रही है दरवाजे और खिड़कियां भी शीशे की दिखाई दे रहे हैं।

यहां पे मुझे एक वोट दिखाई दे रही है जिसके साथ दो लड़के नजर आ रहे हैं।

इस तस्वीर में मुझे एक करयाना स्टोर नजर आ रहा है।

यहां पे मुझे बहुत सारी लाइट्स नजर आ रही हैं और एक वेटिंग मशीन नजर आ रही है कुछ लोग यहां काउंटर पे बैठे हुए हैं।

मुझे यहां पे एक पहाड़ी नज़र आ रही है यहां पे बहुत सारी बड़ी-बड़ी चट्टानें और पत्थर दिखाई दे रहे हैं मुझे छोटी-छोटी घास और क्यारियां भी नज़र आ रही हैं।

सामने मुझे एक गमला दिख रहा है जिसमें पौधे लगे हुए हैं।

साथ ही मुझे बहोत बड़ी बड़ी चट्टानें और पत्थर दिखाई दे रहे हैं।

बहोत सारी टहनियां भी मुझे लटकी हुई नजर आ रही है। आसपास चट्टानों के वजह--

मुझे यहां पर चेयर्स नजर आ रही है जिसमें एक लड़का बैठा हुआ है अंदर बहोत सारी चेयर्स और टेबल भी नजर आ रही हैं।

इसकी मुझे बहोत सारी खिड़कियां और दरवाजे नजर आ रहे हैं।

जहां पे मुझे ग्रीन कलर का टेंट नजर आ रहा है।

जिसे बहोत सारी सुन्दर लाइटों से चमकाया गया है मुझे यहां पे बहोत सारी शीशे की खिड़कियां और दरवाजे नजर आ रहे हैं।

दिखाई दे रही है गुरुद्वारे में मुझे कुछ लोग भी अंदर जाते हुए नजर आ रहे हैं।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

मुझे यहां पर एक व्हाइट बोर्ड दिख रहा है जिसमें टीचर है पढ़ा रही है।

इस तस्वीर में मुझे एक बिल्डिंग नजर आ रही है।

वाश बेसिन भी दिखाई दे रहा है मुझे एक फ्रिज भी दिखाई दे रहा है।

और कुछ मिर्चियों को लिफाफे में भी भरा हुआ है।